इस तस्वीर में एक ए_सी लगी हुई है और एक आद--

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बाइक सवार जाते दिख रहा है।

और एक सामने एल_ई_डी टी_वी नजर आ रही है।